यहां पर सजावट की गई है।

यहां पर काफी सुंदर सजावट की गई है।

यहां पर पेड़ भी लगे हुए है।

यहां पर छोटी छोटी बिल्डिंग्स भी है।